यहां पर चारो तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही हैं और उधर की साइड में बहोत गहरे गहरे पेड़ हैं।

और यह आदमी है जो अपने इधर देख रहा है और साइड में कुछ किए हुए खड़ा है महिलाएं ऐसे बैठी है अलग अलग--